ये एक सुपर मार्केट है।

यहा मिट्टी पड़ी हुई है बहुत सारी और इधर धडाधड पेड़ भी आ रहे है बगीचे मे --

और इस पर फ्लावर्स लगे हुए है बहुत सारे और बहुत सारे फोटोग्राफर्स खड़े है वो लोग फोटोज ले रहे है साइड मे कुछ लोग बैठे हुए है।

और नदी के चारो तरफ पेड़ ही पेड़ है खेत है हरियाली ही हरियाली है।

ये एक चर्च है और यहां कलर फुल लाइटिंग लगी हुई है बहुत सारे लोग यहां टहल रहे हैं एक आटी चर्च के बाहर फोटो खिंचवा रही है।

ये एक जगह है जहां पर पत्थर ले जा रहा है और सारी लेबर लगी हुई है एक खड़ा हुआ फोन चला जा रहा है और ये पत्थर अंदर ले जा रहा है।

कैलकुलेटर और ये सामने शॉपकीपर खडे है।

ये एक रेस्टोरेंट है और ये जो बाहर जो गार्डन है --